सामने एक मोटरसाइकिल है एक स्कूटी है स्कूटी पे एक आदमी गुलाबी कलर का शर्ट सफेद और नीली छत्री है।

इस चित्र मे एक शॉप की दुकान दिखाई दे रही है। सामने गेट शीशे के बने हुए है। अंदर लाइट जल रही है और कुछ लाइट लाल दिखाई दे रहे है।